ये बहुत ही शानदार है और यहां पर एक टेबल है और साइड में एक लैंप है।

जैसे कि हम देख सकते हैं यह व्यक्ति अंदर को जा रहा है जो कि यहां चार बोर्ड लगे हुए हैं और यहां पर एक लंबा सा हाल है को यह आदमी जा रहा है।

तो आप यहां जरूर आए और अपनी भी गजल गाए।